और यहां पानी भी चल रहा है।

और यहां बहोत सारे गुब्बारे टंगे हुए है।

और इसमें क्रे ट्रे में अंडे रखे हुए हैं बहुत सारे।

इसमें बहुत सारी बुक्स रखे हुए हैं किताबें--

यहां पे फ्रिज भी रखा है और कूलर भी रखा है।

और ये थोड़े थोड़े ऊबड़ खूबड़ भी हो रहे हैं।

कुछ आदमी खड़े हुए और बैठे हुए है।

कुछ टीचर भी है और कई पेड़ भी खड़े हुए हैं।

कुछ आदमी भी खड़े हैं सड़कों पे बाइक भी खड़ी है।

यहां पे ये कई सारे लकड़ी के डिजाइन बने हुए हैं।

इसमें बहुत सारा पानी भी जमा हुआ है।

इनवर्टर बैटरा भी रखा हुआ है खिड़की भी लगी है।

इसमें लोहे का गेट लगा हुआ है।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

यहां पे ये लोहे की ग्रिल लगी हुई है।

और इसमें लोहे की ग्रिल भी लगी है नीचे बहुत सारे टाइलें लगी हुई है।

बाहर कई सारी बाइके खड़ी हैं।

यहां पे एक बहोत बड़ा बरामदा है।

अलग अलग कलर के और इसमें बेड भी पड़ा हुआ है।

और इसमें बहुत से आदमी और बहुत सी औरत खड़ी हुई है चर्च लिए--

और इसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई है।

यहां पे ये एक रूम है।

और यहां बड़ी सी टेबल लखी हुई है।

और इसमें बहुत सारा सामान रखा है।

यहां पे यह रेलवे स्टेशन है बड़ा।

यहां पे ये दुकान है।